फुटबॉल वॉलीबॉल यहां पे खेलते हैं और मैदान में छोटे-छोटे घास है बाउंड्री है।

चारों तरफ मकान दिख रहा है और एक तरीके से बोले तो ईस्टेडियम भी इसको बोला जाता है।

रखा हुआ है भर के।

यहां पे मस्जिद है और मस्जिद में --

और यहां की बनावट से ही लग लगता है ये मस्जिद है पैंट है और एक आदमी बैठा हुआ है नमाज पढ़ रहा है।

यहा पे बगीचा है और यहा पे सब पेड़ पौधे दिख रहे है बड़े बड़े।

बोलेतो यहा पे गार्डन भी बोल सकते है।

यहां पे गार्डन है और गार्डन में सब --

पौधे लगे हुए हैं और यहां पे दो महले का मकान टाइप का दिख रहा है यहां पे सरकारी कार्यालय है और यहां पे जो है --

टेबल है टेबल ग्रीन कलर में ऊपर का पलाई है और यहां पे कुर्सी भी है।

दुल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और --

और मैदान में सब पानी वगैरह गिरा है और यहां प दो लोग खड़े हुए हैं।

कुर्सी रखा हुआ है यहां पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है और --

यहां पे स्टेडियम बना हुआ है और यहां पे मैदान में बहुत सारे युवा लोग हैं यहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं।

लगा हुआ है और चारों तरफ पेड़ पौधे दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है बादल घिरे हुए हैं।

सूर्य अस्त हो रहा है सूर्य भगवान का थोड़ा-थोड़ा किरण दिख रहा है और अंधेरा टाइप का हो गया है।

और पानी में भी सूर्य भगवान चमक रहे हैं।

और यहां पे दो महले का है यहां पे बड़ी-बड़ी खिड़कियां भी लगी हुई है ऐसा लगता है यहां पे पुलिस --

सामने झालर वगैरा से खूबसूरत से सजाया गया है नारियल का पेड़ है और बड़ा पेड़ दिख रहा है रात का समय है।

और बगीचा है आम का पेड़ सब दिख रहा है और --

पत्ता गोभी लौकी और यहां पे तरबूज --

और लाइट जल रहा है।

पेड़ पौधों की तरह यहां पे खंबा है लाइट लगा हुआ है और झालर भी बहुत सुंदर-सुंदर लगे हैं और बहुत सारा कुर्सी रखा है बैठने के लिए रात का समय है और --

पेड़ हैं एक दिख रहा है और बहुत खूबसूरत से लाइटिंग से सजाया --

एक बहुत बड़ा मोर बैठा हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है और यहां पे --

आदमी लोग जेंस खड़े हैं लेकिन वाइट दिख रहे हैं और यहां पे बस्तर डेरी फॉर्म --

ग्रीन से पेंट हुआ है ग्रीन सब दिख रहा है और सीढ़ियां पे बिसलेरी का बॉर्डर रखा है गमले में --

थ्री सेवेंटी फाइव है कोई थ्री फिफ्टी फाइव है थ्री नाइंटी नाइन है ऐसे ऐसे सरप्राइज लिखा हुआ है मॉल में और लाइट जल रहा है।

यहां पे पाइप लगा है और यहां पे पानी का --

सीड़िया बनी हुई है और दोनों --

यहां पे सब जंगल ही जंगल दिख रहा है और बहुत घना जंगल है और यहां बीच में --

थोड़ा-थोड़ा आसमान दिख रहा है सूर्य भगवान का यहां प्रकाश दिख रहा है।

एक हाथी भी दिख रहा है और सब ब्लॅक एंड व्हाइट दिख रहा है और यहां पे ग्रिल लगा हुआ है और यहा पे --

जांच वगैरा होता है और यहां पे --